यह एक बहुत पुराना सा मंदिर है जिसके आगे में बहुत बड़ा सा तालाब है।

बोहत बड़ा का घर हैं जो एक महल टाइप का लग रहा हैं।

यह स्कूल बच्चे जाकर कर के यहाँ पर बहोत कुछ सीखते है और अपने जीवन सुधारते है।

यहाँ यहाँ इसको बोहोत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है ताकि ये नाव को कही जाने न दे और इसको जकड करके रखे --

इसे खाया जाता है और ये खाने में काफी स्वादिसट होता है।

यह एक नवाज घर है जहाँ पर मुसलमान लोग आते है समय -समय पर नमाज पढ़ते हैं।

और आपको जिस मॉडल में चाहिए जिस स्टाइल में चाहिए उस स्टाइल में हैयर को आप काट देंगे --

यह एक बहुत बड़ा सा घर हैजिस घर का रंग करन कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मस्त है।

यह एक शासकीय नवीनमहाविद्यालय है जो --

पीछे साइड में बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी गई है यह गाड़ियां के दाम बहुत ही ज्यादा है।

कोई इसी प्रकार का कुछ काम किया जाता होगा जो बंजर दिख रहा है।

जो मेरे मुझे जानकारी नहीं है और इसके साइड मे बहुत बड़ा सा गेट हैं जो लोहै का है यह बहुत सुरक्षा प्रदान करता हैं।

लाइने इधर से उधर जाती है लाइने पार होती है और यह तार को तंग टांग कर रखते हैं।

यह काम किसी लोग द्वारा आयोजित किया गया होगा और यहाँ पर बहुत से लोहै के बने हुए वस्तुए हैं जो बहुत ही बड़े-बड़े वस्तुए हैं।

दूल्हा पहनता है शेरवानी है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती हैं।